इस पिक्चर में हमारे को वॉल दिखाई दे रही है जिसको बहोत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है।

सामने एक बाइक भी खड़ी है और सामने लिखा भी हुआ है कि ए कार हब ।

ये एक पहाड़ी जगह की एक रेस्टोरेंट की फोटो है।

ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जीसमें तरह तरह की केबल्स के डब्बे रखे हुए हैं।

और बहुत सारी तरह की लाइटें रखी हुई हैं और स्टेयर्स के नीचे जा के भी शॉप है।

हम ऊपर जा सकते है या नीचे जा सकते है हमारे को सीढ़ियां चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता बुजुर्ग लोगों के लिए इसकी बहोत सुविधा है।

और ये फिर एक ऑनलाइन भी पेमेंट ले लेते है ओर ऑफलाइन भी पेमेंट ले ले--

इस लिए इसको नए नीले और सफेद गुब्बारों से सजाया हुआ--

सामने एक फोटो लगी हुई है जिसमें सात घोड़े हमारे को नजर आ रहे हैं जहां पर सात घोड़ों की फोटो लगी होती है वह जगह बहुत शुभ मानी जाती है।

कम बसे आडे की वजह से विचारों को ऊपर बैठना पड़ता--

ये एक पेट्रोल पंप की दुकान है जो इंडियन ऑयल के नाम से है।

अपने घरों का कूड़ा इस गाड़ी में डालेंगे और ये जो गाड़ी वाले हैं बाहर ले जाकर कहीं पे दूर फेंक आए--

और सामने शोकेस में तीन चार लाइनों में सैंडल रखे हुए है।